हम देख सकते की साथ में की कुछ दूर कुछ देर है कुछ देर बाद यहाँ पे टांट टेंट लगा हुआ है जो की देखने में बहोत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है और फिल्ड देख पाते है की कैसा लड़की है जो की अभी खेल कर जाती हुई हमें दिखाई दे रहे है।

हम देख पते है की ये साउथ इंडिया में होने वाले नृत्य है जो की वहाँ पे बहुत ही ज्यादा इसे प्रचलित किया गया है जो ऐसे हमारा आंध्र प्रदेश लाइनो में से खूब होता है नृत्य जिसे हम कथकली भी कहते है।

हम देख पाते है की इसमें कोई एक बच्चा है जो की बैंच के ऊपर चढ़ा हुआ है साथ में यहाँ पे देखते है बड़ी बहोत बड़ी ईमारत है और हम नीचे देख पाते है की एक गाय भी है जो की घूम रही है।

और बहुत सारे लोग इधर-उधर घूम भी रहे है लगता है यहाँ कोई सेरमोनी हो रहा जिसके कारण में बहुत सारे लोग आये हुए है ठेहरे हुए है और साथ इमारत फोटो भी बहोत अच्छी है जो की वाइट कलर से पेंटिंग किया हुआ है।